इस फोटो में हम देख सका हैं की यो गार्डन सा दिखाई देवे कुछ--

काफी बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

अलग गाड्डी हैं जिसके अलग अलग ब्रांड की गाडी हैं मतलब--

तो इस फोटो में हम देख सके शायद --

आप देखो सुबह बाउंड्री हो रही है और मसाला पड़ा गणेश

आप देख सको हो रखा हुआ दिखाई दे रहा है और ये पड़ी--

इस फोटो में हम ना नजर आ रही हो कोई शोरूम दिखाई दे रहा है कपड़ों का जिसमें आप देख सको कितने प्यारे प्यारे कलेक्शन --

इस फोटो में हम देख सके हैं ये खाली जगह पड़ी दिखाई देवे गणी।

यूनियन बैंक है यूनियन बैंक आप तो देख सको शायद आज इसमें फोटो मे है जो बंद से है।

और बहुत सारे कट्टे ऐसे रखे हैं सामान के भरे हुए।

ये कुछ ज्यादा भार ऊपर की साइड उठा रहा है ऊपर लिखा हुआ है।

इस फोटो में हम देख सका किसी भगवान की कोई प्रतिमा बना रखी है जिस में हम देख सका हां।

इस फोटो में हम देख सकां शायद यह कोई योगा की--